इस फोटो मे एक पानी का टंका दिख रहा है| एक अंकल झाड़ू लगा रहा है ।

एक बाइक पे हेलमेट टंगा हुआ है और एक बहोत बड़ा बेट बोर्ड लगा है सामने और एक मकान दिख रहा है।